यहां बहोत से हिरण घास चरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक गुफा दिख रहा है यहां एक आदमी दिखाई दे रहा है।

आदमी गुफा के बाहर खड़ा हुए दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ महिलाएं भी दिख रही है कुछ पुरुष भी दिखाई दे रहे कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे--

इसके ठीक सामने एक घड़ी दिखाई दे रही है।

उपर कुछ लाइटे नजर आ रही है यहा बहुत सारे लड़के और लड़कियां चेयर में बैठी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक सब्जी का मार्केट है जिसमें बहुत अनेक प्रकार की सब्जियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक गिरजा घर है जिसको लाइटों से पूरी तरह सजाया गया है।

आसमान एकदम काली नजर आ रही है कुछ लोग चलते नजर आ रहे हैं इसके ठीक बाहर एक क्रॉस का साइन बना हुआ है।

एक आदमी यहां दिखाई दे रहा है पीछे एक लाइट नजर आ रही है ऊपर कुछ तार नजर आ रही है।

उसके ठीक आगे एक छोटा सा पौधा नजर आ रहा है।

पीछे आसमान एकदम स्वच्छ दिखाई दे रहा है यहां कुछ छोटे छोटे पत्थर नजर आ रही है।

एक लाइट भी नजर आ रही है बाहर और रोशनी दिखाई दे रही है।

कुछ बैलून भी दिखाई दे रही है लोहे से बनी हुई डंबल भी दिखाई दे रही है।